यह एक कछुआ है जो की बहुत बड़ा है ।

बढ़िया है सॉलिड है ये बहुत ही बढ़िया है ।

सब कोई अपना अपना बैठ चुके हैं |

खिड़की भी ही बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुन्दर है बढियाँ है।

बेंच भी एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर --

अच्छा बैकग्राउंड भी है बहोत अच्छा है बहोत बढ़िया है बहुत ही --

बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे दिख रहे है ये कंकर पत्थर।

बहुत ही बढियाँ है बहुत ही अच्छा है बहुत ही --

बहुत बढ़िया है जो की बहुत ही सूंदर है |

बहुत बढ़िया है तीन चार कैमरा मैन है जो की सेल्फी ले रहे है।

बहुत ही मजेदार बहुत ही मजेदार बहुत ही मजेदार बहुत ही --

जिसको बोलता है अच्छा सुंदर बढ़िया।

बहुत ही सुन्दर गाड़ी है बहुत ही अच्छा गाड़ी है |

केवाड़ी भी बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर है ।